कुछ खंभे रखे हुए हैं यहां पर सामने एक दीवार दिखाई दे रही है जो रेड और रेड पर पेट्रोल क्रीम कलर से पुती दिखाई दे रही है तो प्लेट लगी हुई है।

कुछ पत्थर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ सफ़ेद कलर की एक नाव चल रही है दिन का समय दिखाई दे--

फर्श में कुछ टाइल्स लगी है यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ी भी नजर आ रही है यह भूरी सी नजर आ रही है आजू बाजू ग्रीन कलर की घास और को-कुछ सूखा कचरा दिख--

लाइट भी जल रही है एक घर दिख रहा है जो क्रीम कलर से पता हुआ है। यहाँ एक सफ़ेद थैला --

एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है यहाँ पर से पाइप लगे है जो पिले और नीले कलर के दिखाई दे रहे है ऊपर जाने के लिए--

और यहाँ कुछ झाड़ नजर आ रहे है और एक दीबार में गुलाबी कलर भी दिखाई दे रहा हैये दिन का समय है।

एक भैया एक्सरसाइज मशीन में बैठे- लेटे हुए है और जिन्होंने ब्लैक. जीन्स और ग्रे टी.शर्ट ग्रे जुते पहने हुए है यहाँ गुलाबी चक्र दिख रहा है इसका फर्श पूरा दिखाई दे रहा--

यह एक फूलों की दुकान दिखाई दे रही है बहोत लोग यहां बेड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक बड़ी सी बस खड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे एक भइया खड़े हुए है।